कितना सारा कपड़ा देखने को मिल रहा है।

और हरे-भरे पोधे भी देखने को मिल रहे है।

यह एक काफी खूबसूरत नजरा है जैसे कि आप इस फोटो मे देख सकते हैं कई लोग और यहाँ गड़िया भी बोहुत सारे पार्क --.

जेसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं वह कितने सारे टेम्पो हैं |

इस फोटो मे की एक स्कॉर्पियो लगा हुआ है और गाड़ी मे तेल डला रहे हैं। यहां बोहुत दूर-दर से लोग है आते हैं और गाड़ी मे तेल डलवाते हैं और सफर करते है।

और यहा टी.वी. भी देखने को मिल रहा है ओर कई प्रकार के आईने भी।